हाँ हाँ ये बिल्डिंग भी बहुत अच्छे लग रहे है डिजाइन बहुत प्यारे बिल्डिंग के अच्छा दिख रहा है बहुत--

और एकदम गंदा हुवा -हुआ है यहाँ का जगह बट देखना बहोत महेनत करते है मछली को पकड़ के लाते है।

मेडिकल है बहुत बिग मेडिकल है यहाँ सब दवाई सारे मिल जाते होंगे।

अच्छा मेडिकल है या यहाँ का अम्म मेडिकल से हर सामान उपलब्ध हो जाता है बहुत अच्छा मेडिकल है।

उनके बैकग्राउंड में बहुत अच्छे हैं लोग भी बहुत सारे शादी में बहुत अच्छा लग रहा हो रहा है।